और बहुत सारा सूट साड़ी कुट में रखा हुआ है।

दो तकिया भी दिख रहा है और दो चादर रखा हुआ है।

कुछ आदमी बैठा हुआ है कुछ टेबुल कुर्सी लगी हुई है।

कुछ पेप्सी का पेंटिंग नजर आ रहा है।

यह एक रूम का दृश्य है।

जहां पे पेड़ पौधा बहुत नजर आ रहा।

यह एक रूम का दृश्य है।

व्हाइट उजला देवाल खड़ा है।

मोटरसाइकिल भी है स्कूटी भी है कार भी है।

और पेड़ पौधा बड़ा बड़ा है उसमें हरा हरा पत्ती भी है कुछ घर भी दिख रहा है।

यहां पीला रंग का सोफा रखा हुआ है काला सोफा है ग्रे सोफा है।

जहाँ पेट्रोल पंप दिख रहा है दो ठो इधर है दो ठो पीछे है।

यह एक बाहर का दृश्य है जहां बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य है।

जोकि बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

और कुछ मचाने भी दिख रहा है।

रूम में साइड में कुछ सामान भी रखा हुआ है।

ब्लू बोर्ड भी दिख रहा है लाल बोर्ड। --

यह एक रूम का दृश्य है।

जहां पे व्हाइट कलर का रूम है।

पेंटिंग भी बना हुआ है बोर्ड भी लगा हुआ है।

जहां पे कपड़ा दिख रहा--

कुछ गद्दा बिछा के दुकान खुला दिख रहा है साड़ी टंगा हुआ है।